एक आदमी है आदमी के सर पर भी कैप है दीवार पर पेंटिंग लगी हुई है।

इसमें एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के ऊपर टैंक रखा हुआ है।

यह नाई की दुकान है नाई की दुकान में ए_सी लगी हुई है।

बाइक खड़ी है सामने जीना चढ़ा हुआ है।

इसमें साइड में एक पानी की बोतल लख्खी हुई है।

यह एक दुकान है दुकान में रैक बनी हुई है।

एक खम खंभा भी खड़ा हुआ है।

एक एल_सी_डी रखी हुई है साइड में बिजली का बोर्ड लगा हुआ है।

दो एक औरत बैठी हुई है।

दुकान से बाहर साइड में गुब्बारे लगे हुए हैं दुकान के अंदर लाईटें जली हुई है।

और दुकान में दीवार पर एल_सी_डी लगी हुई है।

यहां दो गधे खड़े हुए हैं।

यह बच्चों के खेलने की जगह है।

एक स्प्रे फ़ुहारा रखा है।

कीम की दीवारों पर सफेद सफेद निशान है।

तालाब के पास में घर बने हुए हैं।

ऊपर गुब्बारे लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है।